यह किसी पुराने भवन की तस्वीर है जो की अंग्रेजों के वक्त मे बनाया हुआ लग रहा है।

गाड़ी टोयोटा कंपनी की है।

भी इस चित्र मे खड़ा हुआ हैं।

उस पर सीढ़िया दिख रही है नीचे कुछ कमरे जैसा दिख रहा है और ऊपर भी कंस्टट्रक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

और यह ब्रिज गाड़ियों नहीं ऐसा लग रहा है की ट्रेन के लिए बना हुआ है।